दिवार में वॉलपेपर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

एक बुज़ुर्गों को ले जाते हुए दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जोकि उस पौं पौधों पर --

बड़े -बड़े मशीन रखे हुए दिखाई दे रहे है डंबल रखे हुए दिखाई दे रहे है।

बड़े - बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है घास लगी हुए दिखाई दे रहे है छोटे - छोटे भी पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

एक फ्राक पहनी हुई दिखाई दे रही है दुकान-

काफी घने लगाय लगे हुए दिखाई दे रहै है कुछ मिटटी के ढेर भी दिखाई दे रहै है।

जैसा कि देख पा रहे है एक टेबल दिखाई दे रहा है उस टेबल पर लाल कलर का मैट डला हुआ दिखाई दे रहा हैं।

आई. सी. आई. बैंक लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है उस हॉस्पिटल में एक चेम्बर दिखाई दे रहा है चेम्बर पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

उस तालाब पर एक वॉटर फॉल भी दिखाई दे रहा है चारो तरफ रोड दिखाई दे रहे है।

क्यूंकि मंदिर सा दिखाई दे रहा है गेट दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है और चारों तरफ एड़ी लगी हुई दिखाई दे रही है।

कुछ नवरंगी कलर्स में दिखाई दे रहै है।